यह एक बहुत पुराना यह एक बहुत पुराना खंभा है जिसमे बादल दिख रहे हैं यहाँ पर और कुछ कुआ है वृक्ष है खजूर गाछ --

और कई व्यक्ति है गिटार है।

एक ठो पेड़ भी है। उधर खेत खलिहान दिख रहे है। यह बहुत यह स्वराज कंपनी का ट्रेक्टर है। जिसका सात सेवन थ्री फाइव एथी लिखा हुआ है गाड़ी पर।

ब्रिज दिख रहा यह बांध बहुत नहीं है यह लगता है की लोकलवा इ कोच्ची इ मरलका हरा भरा दिख रहा लेकिन यह पुराना पानी भी दिख रहा उसमे पानी भी यह बहुत दलदल जैसा दिख रहा है।

और एक पोस्ट ऑफिस का है। यहाँ पर गार्डन है एक ठो बैठने वाला कुर्सी लगा हुआ। यहाँ पर तीन दो ठो खजूर का पेड़ दिख रहा है। पेड़ हरे पौधे दिख रहे है यह मस्त है। ये भूरा रंग के भी दिख रहे। यह बहुत अच्छे है। यहाँ पर कुछ फूल पत्तियां भी दिख रही है। यह दिखने में --

यहाँ पर एक ठो सुजुकी दिख रही है। यहाँ पर एक ठो स्कूटी दिख रही यहां एक ठो प्लसर है एक ठो मोटरसाइकिल दिख रही है। यह मोटरसाइकिल वाली व्यक्ति सफेद सा डाकिया--